ये लोग बहुत सारा दिखाई दे रहा है बनते हुए।

गो वातानकुलित टू टियर करके लिख दिख रहा है हिंदी से।

फ्लोर में ग्रीन कलर का दिखाई दे रही है दुकान के बाहर में उस--

के बाद कंफर्ट लोग भी दिखा दिखाई कंफर्ट भी दिखाई दे रही है दुकान के अंदर में।

इस पिक्चर में हमको के_एफ_सी रेस्टोरेंट करके लिखके दिखाई दे रहा है।

सामने में एक फेंसिंग है बहुत लंबा सा येलो और ग्रीन कलर में और रेड कलर में और बड़ा सा बिल्डिंग है उसका ऊपर में।

नोटिस बोर्ड दिखाई दे रही है। उसके सामने में एक छोटा नोटिस बोर्ड दिखाई दे रही है और उसका अंदर में उसमें से दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इनमें भी दिखाई दे रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है वाला बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में हमको एक ब्लू कलर का सिंटेक्स दिखाई दे रहा है और बंबू भी दिखाई दे रहा है।

और रस्सी भी एक टंगा के व्हाइट कलर दिखा रहा है दो ठो--

बैनर में लगाया हुआ है शांति मिठाई शॉप ।

चार ठो दो रेड और दो ग्रीन करके और उनका भी दिखाई दे रहा है।

यहां लोग योगा कार्पेट में बैठ के दिखाई दे रहा है और एक टोपी भी दिखाई दे रहा है। तीन सिंथेटिक कलर काला वाला दिखाई दे रहा है।

और उसका यह दुकान का अंदर पे ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में हमको लाइब्रेरी का अंदर दिखाई दे रहा है।

में एक ब्लू कलर का मग भी दिखाई दे रही है।

लकड़ी से बनाया हुआ दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और--

ग्लास से बनाया हुआ भी दिखाई दे रहा--